दिवारें दिखाई दे रहीं हैं जिनका कलर ब्लैक ग्रे और ग्रीन दिखाई दे रहा है कुछ पेड़ दिखाई दे रहें हैं जिनका कलर ब्लैक ग्रीन दिखाई दे रहा है कुछ सीढ़िया दिखाई दे --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

और आसमान का कलर वाइट दिखाई दे रहा है और कई सारे पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जिनका कलर ग्रीन दिखाई दे रहा है।